इसके चारों ओर लोहे की ग्री जालियां ग्रिल कह सकते हो लगाई हुई है।

ये मछली है मछली काफी सारी इसमें रखी हुई हैं।